जिसमें कुछ टेबल पर रखे हुए हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहें हैं। पेड और दिख रहे हैं घास दिख रहे हैं बिच में दिख रहे हैं टेबल दिख रहे हैं कुरसियां

पास में एक में गाड़ी खड़ी है जो इंडिको में

सामने एक ऊंची बिल्डिंग है जो की अभी बन रही है कंस्ट्रक्शन है सामने दूसरी तरफ मिट्टी ह।